यह एक नदी का घाट है। जि नदी का पानी नीले कलर का दिख रहा है। आस-पास जो है पथरीली जगह है। आस-पास पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

यह दयाल मार्बल की दुकान है यहाँ पर एक डीसीएम खड़ी हुई है अगल बगल पेड़ पौधे हैं यहाँ बड़े बड़े मार्बल के पत्थर मिलते हैं।

यह बादाम शेक --